यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है
इस भाग में हम इन फॉर्म्स की मौजूदगी जाँचेंगे इन फील्ड्स में हमने जो वेल्यूस टाइप की हैं उनसे अभी छुटकारा पाते हैं
और हम पासवर्ड की एन्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं
हम html टैग्स को भी स्थानांतरित करने जा रहे हैं
मानते हैं कि मैं अपने लॉगिन भाग के लिए एन्क्रिप्ट कर रहा हूँ मैं यह login dot php फाइल खोलता हूँ और हमें मेरे पेज में यहाँ कुछ सुधार करने होंगे
हम अपने डेटाबेस के लिए सीधा पासवर्ड ले रहे हैं
अतः हमें यह dbusername वैल्यू और हमारा dbpassword बदलने की आवश्यकता है
यदि आपने पहला विडियो नहीं देखा है तो आपको वह करने की आवश्यकता है ताकि आप इस कोड को लिखने में समर्थ हों
अपने register dot php पर वापस चलते हैं और सबसे पहले हम submit के लिए जाँचेंगे
अभी मेरे पास submit वेरिएबल नहीं है
अतः यह dollar sign underscore post के बराबर होगा और अब submit
ऐसा इसलिए क्योंकि जब उपयोगकर्ता यहाँ submit बटन क्लिक करता है यह register की वैल्यू रखेगा
और यह कहेगा if the user has clicked this button तब हम अपने कोड के साथ जारी रहेंगे
अब अन्य वैल्यूस जो हमें चाहिए वह हैं उपयोगकर्ता का नाम अतः उपयोगकर्ता का पूरा नाम मैं केवल fullname =$ underscore post और fullname टाइप करूँगा आप इसका प्रमाण अभी यहाँ देख सकते हैं
अतः एक बार जब हमें fullname username password repeat password मिल जाएगा तो हम केवल यहाँ दिए हुए नामों की नकल करेंगे ठीक है
अतः हमें fullname मिल गया है और अब हमारे पास username है
मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं कोड लिखूँगा मैं इन्हें नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा
अतः pasword और repeat password यहाँ password और repeat password है मैं इन वैल्यूस को बदलने जा रहा हूँ इन्हें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है
यदि आप php में नये हैं तो मैं सलाह दूँगा कि केवल अभ्यास के लिए आप इन्हें बारबार टाइप करें अतः आप इन्हें नहीं भूलेंगे
अतः हमें सारी वैल्यूस यहाँ मिल गयी हैं
अतः यदि submit है मैं इन्हें एको करूँगा केवल आपको दर्शाने के लिए कि यह सब ठीक से जमा हो चुके हैं
मैं आपको इसकी सलाह गलतियाँ जाँचने के लिए देता हूँi हो सकता है कि आपने कोई गलत वर्तनी लिख दी हो और यह सही नहीं है कि आप डेटा रखना चाह रहे हों जिसकी वर्तनी आपके डेटाबेस में गलत हो
यहाँ मैं लिखूँगा एको username और forward slash और password फिर repeat password और फिर उपयोगकर्ता के fullname के आगे लाइन टर्मिनेटर
अतः हमें यहाँ सभी डेटा मिल गये हैं जिन्हें हमने हमारे फॉर्म से निकाला था
अतः मैं इसे अभी form data की तरह कमेन्ट कर दूँगा
अब तक आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे करें
यदि फॉर्म जमा हो गया हो मैं इसे एको करने जा रहा हूँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह यहाँ पर है
यहाँ यदि मैं register पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता मैं क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है
अतः यहाँ मैं केवल अपना पूरा नाम लिखूँगा और मैं अपना पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ और एक पासवर्ड चुनता हूँ जो अभी के लिए abc होगा
register पर क्लिक करें और कुछ भी नहीं हुआ
अतः if submit post submit
ऐसा इसलिए अपने form action में हमें method निर्धारित करने की आवश्यकता है जोकि post होने जा रहा है
मैं उसे सम्मिलित करना भूल गया
हमें post का method चाहिए अन्यथा डिफॉल्ट रूप में यह get हो जाएगा हाँ आप यह सब यहाँ ऊपर देख सकते हैं
अब मैं क्या करूँगा कि इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और मेरा डेटा फिर से टाइप करूँगा
तो यह alex garrett है और यूजरनेम alex यह abc और abc होगा register पर क्लिक करें और मेरा डेटा यहाँ दिख रहा है
हम जाँच सकते हैं कि यह सही है या नहीं मेरा पूरा नाम alex garrett था मेरा यूजरनेम alex चुना गया था और स्वभावतः abc यहाँ और यहाँ
अब मैं इस पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करना चाहता हूँ
और यदि google या कोई और सर्च इंजिन पर md5 encryption के बारे में पढ़ें तो वह m d 5 है आपके लिए मैं यहाँ अभी लिखता हूँ यह डेटा को एन्क्रिप्ट करने का बहुत ही उपयोगी तरीका है
मैं इन सबसे अभी छुटकारा पाता हूँ अब सब कुछ सही है php में md5 फंक्शन स्ट्रिंग या संख्यात्मक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू या केवल एक डेटा वैल्यू लेता है
और यह md5 एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्ट हो गया है
मानिए मैं alex को md5 में एन्क्रिप्ट करता हूँ इसे एको और रिफ्रेश करें
डेटा को resend न करें तो इसे यहाँ से सीधा वापस आना चाहिए और register पर फिर से क्लिक करें
यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि if submit सही है इस कंडिशन को हटा दें और रिफ्रेश करें
अतः यह मेरा नाम md5 में एन्क्रिप्टेड है
यह हमेशा एक ही लम्बाई का होता है और मुझे लगता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है जबतक कि आप एक स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट न करें और फिर आप उसकी अपनी दो एन्क्रिप्टेड वैल्यूस से तुलना न करें
यदि आपको यह नहीं समझ आया तो मेरे पास md5 encryption पर ट्यूटोरियल है अतः परेशान न हों बस आगे जाएँ और उसे देखें
अब मैं if submit और फिर मेरा कोड लिखूँगा
मेरा fullname username और password सही हैं
मैं इस md5 encryption को अपने जमा किये हुए पासवर्ड और repeat password के साथ जोड़ दूँगा
इसे न भूलें
फिर जब मैं एको करता हूँ लिखते हैं password और केवल एक ब्रेक और repeat password
जब मैं रिफ्रेश करने जाता हूँ या बल्कि जब मैं अपने फॉर्म को जमा करने जाता हूँ मैं अपना पासवर्ड abc और मेरा repeat password abc लिखूँगा
इसे रजिस्टर करें
आप देख सकते हैं कि मेरे 2 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड एक जैसे हैं और दोनों डेटाबेस में रखने के लिए तैयार हैं
अब मानिए यदि कोई आपके डेटाबेस को हैक करता है और लोगों के पासवर्ड पता करता है जोकि abc टाइप किया गया है वह इसे आसानी से पा सकते हैं
मैं इसे यहाँ टाइप करता हूँ किन्तु अब वह क्या है इसे पता करने में वह असक्षम होंगे क्योंकि वह एन्क्रिप्टेड है
ठीक है हमने अपने पासवर्ड्स एन्क्रिप्ट कर लिए हैं अब हम अपने डेटा में किसी भी टैग्स को हटाएँगे और यह करने के लिए हमारे पास strip टैग्स हैं
strip tags यह html टैग्स को हटा देगा
जब मैं मेरे पासवर्ड का उपयोग करता हूँ मैं md5 फंक्शन से पहले स्ट्रिप टैग्स का उपयोग नहीं करूँगा
मैं मेरे पासवर्ड के पहले से स्ट्रिप्ड रूप को एन्क्रिप्ट करने के लिए md5 फंक्शन का उपयोग करूँगा
अतः यह ठीक होना चाहिए
मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ
ठीक है यह हो गया है और वापस चलते हैं और इसे देखते हैं
मैंने यहाँ html में टाइप किया और मेरे username के लिए मैं body लिखता हूँ और मेरे पासवर्ड को बस वैसा ही abc रखता हूँ
उस पर जाते हैं और username एको करते हैं और एक ब्रेक जोड़ते हैं
fullname सब एको करने पर यह सब यहाँ टाइप हो जाएगा
मैं इसके बाद test और इसके बाद test टाइप करूँगा
अब यह strip tag फंक्शन इस html और इस body से छुटकारा दिलाएगा
आपके पास केवल test होना चाहिए और हमें test मिला है
ओह! हमें एक एरर मिली
वापस जाते हैं और जाँचते हैं लाइन टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं किया रिफ्रेश और डेटा रिसेंड करें
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें test और test मिला अतः जो भी आप यहाँ टैग या html टैग की तरह टाइप करते हैं वह बस खाली रहता है
अतः आप जानते हैं कुछ लोग अजीब हो सकते हैं और कहेंगे मेरा username एक image होने जा रहा है register जो कार्य नहीं करता!
यह यहाँ ऊपर एको नहीं हुआ है
किन्तु यदि हम alex लेते हैं और हम register पर क्लिक करते हैं यह मान लिया गया है
अतः अभी इतना ही अगले ट्यूटोरियल में हम जाँचेंगे कि प्रत्येक फील्ड टाइप है क्योंकि वह सब पंजीकरण के लिए अपेक्षित हैं
ठीक है मैं आपको अगले भाग में मिलता हूँ आय आय टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ अलविदा